ये भी कोई बोहत बड़ा मार्किट लग रहा --

स्पोर्ट्स का ही सारा समान --

मंदिर के पास वाली जगह का ये तालाब है। यहाँ पे --

यहाँ पर सिर्फ धार्मिक पुस्तकें हर एक भगवान के धार्मिक पुस्तकें यहाँ मिलती है वो भी हर समय यहाँ --

हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है यहां पर छठ ये उसी का फोटो है जो कि शायद सुबह का सीन है जो कि काफी को कोहरा है।

का ये ऑफिस लग रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक में जो भी पेपर सबमिट काम आता है वो यहीं होते --